जिसमें कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

और एक बंदा नजर आ रहा है।

कुर्सियां रखी हुई है कैंपर रखा हुआ है वह बहुत सारे बैग इसमें नजर आ रहे हैं।

डॉक्टर मनीष कुमार गहलोट का ये ऑफिस है जिसमें शलर्ट रखी हुई है ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी है।

जिसमें एक आदमी है जिसने शर्ट पहन रखी है और एक आदमी है जिसने भी शर्ट पहन रखी है।

जिसमें एक टैक्सी है एक ट्रक है एक आदमी है जो पेट्रोल दे रहा है और एक डीजल दे रहा है।

शुभम नाम का फर्नीचर की दुकान है जिसके ऊपर हेटीच लिखा हुआ है।